दीना नाथ पांडे राजकीय महिला पी.जी. कॉलेज सी.सी. रोड देवरिया में स्थित है। इसे देवरिया शहर के लोग महिला डिग्री कॉलेज के नाम से भी बुलाते हैं। यह शहर का एक काफी पुराना --

कोविड की कोविड काल में मेडिकल स्टोर वाले ही सबसे ज्यादा कमाई कर रहे थे और इन्होंने काफी धन उगाही की उस समय।

आ क खेल-कूद में हमेशा बढ़-चढ़ के भागेदारी करनी चाहिए।

बोहोत बड़ा मेला लगता है और श्रद्धालुओ कि अच्छी भीड़ इकट्टा हो --